और एक मशीन में इनमें से पानी की बोतल रखी हुई है एक मशीन के ऊपर प्लास्टिक का जार लगा हुआ है दूसरी मशीन में पकड़ने वाला प्लास्टिक का--

चारों तरफ प्लास्टिक कवर लगे हुए हैं चारों तरफ दीवाल है दीवाल का कलर व्हाईट कलर का है चारों के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं।

टाइल्स लगी हुई है जिन पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर की पट्टी बंधी हुई है।

इसके ऊपर बहोत वो भगवान जी विवेकानंद जी बने हुए हैं जिन्होंने अपना हाथ--

यह दो गधों की फोटो है और यह गधे एक जाली के अंदर बंद हैं दोनों के दोनों--

इस तरफ लोहे की फ़टनिया पड़ी हुई है सामने कच्ची जमीन पड़ी है सामने एक घर बना हुआ है जस्ट सामने एक पेड़ लगा हुआ है --

जस्ट सामने एक टी_वी चालू है जहां पर भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर दिख रहा है और कुछ लिखा हुआ है।

ये लोग ईंटों के खरंजे पर खड़े हुए हैं जिन पर बड़ी बड़ी सीमेंट वाली ईंटों का खरंजा है सामने दो बाइक से रखी हैं जिनमें से एक स्कूटी --

इस पर काफी सारी लाइटे रखी हुई हैं शॉप बहोत अच्छी है क्योंकि कंच लगा हुआ है शॉप के चारों तरफ से--